एक मकान है और नीचे एक बैंक है ए.टी.एम. कर के कुछ लिखा है गोल्ड लोन लिखा है।

वाइट कलर के छत के ऊपर से तार गया है झंजरीयां लगी हुई है कुछ गेटो में --

कुछ कपड़े रखे हुए हैं लाइटें लगी हुई व्हाइट कलर की एक जेंट्स बैठा हुआ है पढ़ रहा है उसमें।

है एक पुतला खड़ा हुआ है सामने टाइप की --

टेंट लगा हुआ है पिंक और औरेंज कलर का डेकोरेट हो रहा है पंडित बोल बोल रहे हैं।